ये फोटो एक कपड़ों की दुकान की है।

कुर्सियां टेबल पड़े हैं और टेबल पर बोटल है।

दो तीन कुर्सियां लगी है और--

ये फोटो एक रेस्टोरेंट की है यहां पर आई लव पठानकोट लिखा गया है और यहां पर --